एक स्कूल का दृश्य है जहाँ पर हमें जमीन पर कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और यह चार्ट पेपर से कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

हम अपना मन है कर रहे है ऐसा लग रहा है यहां कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

स्कूल का दृशय है जहाँ पर हमे कुछ बच्चे जमीन पर बैठ कर कुछ क्रिएटिविटी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे है।

इन्हें माला भी पहनाए गए है मंदिर भी बहुत ही सुन्दर से सजाया गया है मैं यहां पर एक पंडित जी भी दिखाई दे रहे है देखने में ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है।

एक कंस्ट्रक्शन के साइट का है जहाँ पर हमे कुछ लोग सीमेंट भरते हुए दिखाई दे रहे हैं | वहीं हम यहाँ पर बहुत सारा विंडो खोदा हुआ भी देख पा रहे हैं |

यह एक स्कूल का दृश्य है जहाँ पर हमें बहुत सारे बच्चे नीचे बैठ कर कुछ पेपरवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं| यह सारे कुछ क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं|

में हमें एक शादी का पंडाल दिखाई दे रहा है जो कि दिखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है इसे फूलों से बहुत ही सुन्दर तरीके से सजाया गया है।

इन्हो मे से कुछ ने छाता भी ओढ़ रखा है | देखने में यह दृश्य अद्भुत लग रहा है।

ये सारे अपनी अपनी गर्दन झुकाकर खड़े है ऐसा लग रहा है प्रिंसिपल इन्हें कुछ बोल रहें है हमें यहाँ पर बलून भी लगी हुई दखाई दे रही है।